अर जु हरी-हरी रिंग-रंग की घास च वै पर छ दिखेणी छोटी-छोटी जों पर अम-बॉक्स (Box) छा या डब्बा कर छन लगायां जों डूँगा छन और पिछाड़ी बटिन अलग-अलग मंदिर छन दिखेणा और नारियल का डाला और खजूर का डाला दूया छन दिखेणा।

पिछाड़ी बिटिन एक टंकी भी दिखेणी जु कि सफेद रंग की छा और ये टावर छा ये पर सब कुछ लोहा कू लग्युं लोहा की तार वगैरा केबल वगैरा बगल में येकु ट्रांसफार्मर छा लगायुं।